पठान कोट सेंटर लिखा हुआ है और उस पे नंबर भी लिखा हुआ है नाइन डबल वन फाइव डबल टू ट्रिपल --

बनाए हुए हैं बाउंड्री के लिए और--

जिम का हॉल ये लग रहा है और हॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और--

भी दिख रहा है और ये समान लेकर जा रहा है।

फूल लगे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा--

हरे और पीले संतरी रंग के हैं ऊपर डेकोरेशन बहुत ही सुंदर दुकान में की गई है।

ये एक बहोत ही बड़ा वंडरलैंड है। यहां पे पानी --

बहोत ही सुन्दर लग रहा है पीछे बहोत ही ज्यादा सुन्दर--

बहोत ही अच्छे से सामान सेट करके रखा है कुर्सी भी सामने लगी हुई है।

यह एक बहुत ही बड़ा मोर है मोर बहुत ही सुंदर दिख रहा है और वो ये डांस कर रहा है।

बहोत ही ज्यादा यहां पे रखा हुआ है और--

ऊपर लाइट भी जगी हुई है बहुत सुंदर लग रहा है और कोर्ट पैंट लगे हुए है और अच्छे से तैयार --